जा रहा है | रास्ता के मिडिल में एक स्टेचू दिख रहा है | स्टेचू बहुत बड़ा है | रास्ता के चार पांच मै बहुत सारे पेड़ दिख रहा है | की हेडिंग भी दिख रहा है |

उस टीचर पढ़ता है | एक वाइट बोर्ड भी दिख रहा है | पास मै एक चेयर है | एक लड़की खड़ा है | एक रिक्सा मैन दिख रहा है | एक --

इधर पे एक गाड़ी खड़ा है गाड़ी के चार पास बहुत --

इधर पे एक फिल्ड है फिल्ड बहुत बड़ा है फिल्ड में एक --

एक टूल भी है चार-पाँच में बहुत सारे है इधर पे रोज बहुत सारे लोग आती है।

इधर पे बड़ा सा किचन है। किचन में बहुत सारे लोग काम कर रहा है। किचन में बहुत वेजिटेबल पोटैटो बहुत सारे बर्तन --

इधर एक दोकान है दोकान में बहुत सारे शूज बैट बाॅल बोहोत सारे जेन्स गेंजी टी-शर्ट दिख रहा है दोकान की चार पास में --

चार पास में बहोत सारे पेड़ दिख रहा है दूर पे एक हाउस है हाउस के सामने रास्ता है रास्ता मै कुछ लोग जा रहा है।

स्कूटी बाइक खड़ा है दूर में एक बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग के सामने कुछ लोग हैं एक पाठशाला भी दिख रहा है पाठशाला के ही पास कुछ पेड़ है।

पेंडेल के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं।

इधर पे एक फ्रूट्स का दुकान है | दुकान बहुत बड़ा है | दुकान पे मैंगो है एप्पल है पोमाग्रेनेट है लेमन है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी है |

इधर एक रास्ता है | रास्ता के साइड मै एक स्टेचू है | स्टेचू बहुत बड़ा है | स्टेचू के चार पास मै रेलिंग से घिरी हुई है |

इधर पे एक पहाड़ की गुफा दिख रहा है | गुफा बहुत पुराना है | बहुत बड़ा है | गुफा की दीवाल में एक लोग खड़ा है |

एक चेयर है एक बड़ा सा टेबिल है टेबिल के ऊपर एक कैलकुलेटर है इधर पे रोज बहुत सारे लोग आती-जाती है।

एक बाइक एक स्कूटी है एक डस्टबिन दिखा रहा है दुकान के बाहर दीवाल पे एक बॉक्स है | दुकान के आस-पास बहुत सारे पेड़ हैं | दूर मै कुछ बिल्डिंग है |

बहुत सारे पेड़ भी दिख रहा है सामने एक ओवरब्रिज है ओवरब्रिज में बहुत सारे लोग है।

इधर पे एक दुकान दिख रहा है दुकान में बहोत सारे काप मेमेन्ट है बहोत सारे बैट है।

सामने एक चेयर दिख रहा है दीवाल की रैक में कुछ बॉक्स है बहुत बॉल भी है सीलिंग पे एक फैन दिख रहा है।

इधर पे एक गेट दिख रहा है गेट अब खुला है गेट के अंदर एक कॉलेज है कॉलेज बहुत बड़ा है बहुत स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ती है कॉलेज की --

इधर पे एक गेट है के अंदर ये बड़ा-सा कालेज है इस कॉलेज में बहुत-सी स्टूडेंट पढ़ती है कॉलेज की सामने बहोत पेड़ दिख रहा है।

इधर पे एक स्कूल की क्लासरूम है क्लासरूम में बहोत सारे चेयर टेबल हैं सामने एक टीचर्स की भी शायद टेबल है।